पुरानी इंद्रधनुष लग रहा है नीचे घाँसे दिखाई दे रही हैं कुछ पेड़ सफेद रंग दिखाई दे रहा हैं पेड़ दिखाई दे रहा हैं पेड़--

यहाँ पर मेज भी रखा हुआ हैं कुर्सी रखे हुए है।

और लोवर पहने हुए है और अ चप्पल पहने हुए है सामने मोटर साइकिल लगी भी हैं ।

और ऊपर आसमान में बादल भी छाए हुए है और--

और एक लड़का और खड़ा हुआ है सामने की तरफ काँच भी लगा हुआ हैं ।